और बहोत सारे पेड़ है छोटे छोटे जैसा कि मै देख पा रही हूं एक लड़की बैग लेकर के--

ये स्टेज को फूल और कपड़े से सजाया गया है देखने में काफी सुंदर और बड़ा है।

जैसा की में देख पा रही हूँ ये एक सरकारी दफ्तर है इसमें एक उड़िया में लिखा हुआ है और अ ब्लू रंग का बोर्ड है।

और एक काई हरा हरा रंग का स्वेटर टंगा हुआ है साइड में बहोत सारा चादर--

काफी घास है मट्टी दिख रही है।

में देख पा रही हूँ ये एक सरकारी दफ्तर है इसमें ब्लू रंग का बोर्ड लगा हुआ है ये एक सरकारी फ़ोरेस्ट कार्यालय है।

गेट भी खुला हुआ है काफी इसमे रूम भी है जेसा कि--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक कार्यालय है जहां पे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं एक व्यक्ति कुर्ते पजामा में है।

दो व्यक्ति जींस और टी शर्ट में दिख रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूं दोपहर का समय है यहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है दो तीन स्कूटी है ये--

जैसा कि मैं देख पा रही हु ये एक बड़ा बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के अंदर--

दुपहर का समय है इस बिल्डिंग के निचे कोई दुकान है जो सब बंद है।

काफी बादल छाया हुआ है । एक कर एक ओटो एक सफेद रंग कि कार है उप--

जो कि मैं देखो पा रही हूँ ये चाय का दुकान है।

इन बोट बॉटल में पानी रखा हुआ उसके सामने बाल्टी है जिसमें कचडा रखा हुआ है।

और इसमे गुल्लक लक मिट्टी का गुल्लक रखा हुआ कुछ बिस्किट हैं।

सूट पहना हुआ है महिला का कपड़ा है जेन्स का कपड़ा पहना हुआ है मोल --

मॉल के आगे गाड़ी लगा हुआ है और अ अ साइड में स्कूटी लगा हुआ है और कुछ साइकिल भी है।

इसमें फूल भी है लगे हुए बड़े बड़े पेड़ है।

जैसा की मैं देख पा रही हूं ये एक मंदिर है मंदिर के आगे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

होटल का नाम राधा डिलाइट --

हरे रंग का बोर्ड बना हुआ है साइड में लाल रंग का बोर्ड है जिसमे अब तक पेड़ नी--

केनिउंत पेंट लिखा हुआ है एक गुलाबी रंग का बोर्ड है जिसमें फ्लावर लिखा हुआ हुआ है दो स--

दो शेर का पिक्चुर बना हुआ है अंदर में टेबल रखा हुआ है।

और उसके बगल में एक प्रोज खड़े हुएं हैं जो गंजी और जींन्स पेहना हुआ है।

जहां बहोत सारे व्यक्ति हैं इसमे सब कुछ कुछ लड़के हैं लड़कियां हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह समय शाम का समय है बहुत सारा पेड़ है हरे हरे--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये चिड़िया घर है इस चिड़िया घर में एक हिरन है।

डोरमेट रखा हुआ है लड़कों के जूते चप्पल सजे हुए है साइड में एक सीढ़ी रखी हुई--

इसके अंदर एक लाइट है येलो रंग का इसके दीवार का कलर है।

आसमान में काफी बादल छाया हुआ है रोड पे सन्नाटा छाया हुआ है।

जैसा की में देख पा रही हूँ ये एक होटल है होटल में एक बोर्ड लगा हुआ हे जिसमें नाईट चल रहा है।

जैसा कि में देख पा रही हुं रात का समय है।

सनाटा अधेरा छाया हुआ है उसमें ची--

लिक एक पोर में सामने वाले में चाईंनिस एंड मेक्सिकन डोसा लिखा हुआ है एक हॉट एंड पोर प्लाजो लिखा हुआ है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं शाम का समय है एक महिला है जो अह भैंस को चरा रही है।

दो भैंस हैं उसके पीछे एक लड़का है जो लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

होटल के बगल एक साइबर कैफ़े है ये काफी सुंदर होटल दिख रहा है इसमें ए_सी का भी सिस्टम है।

जैसा की में देख पा रही हूँ ये एक ऑफिस है इस ऑफिस के दिवार पे भगवानजी का फोटो टंगा हुआ है।